एक जिम मे वर्कआउट कर रहे है जो काले रंग का शर्ट प-लोअर काले रंग का शर्ट पहना है।

पीछे एक दिवार है जो सफेद रंग की है पीछे के साइट पे एक कुछ बॉटल रखी गई है हरे रंग की बॉटल दो आदमी बैठा व पीछे के साइड पे ए पोस्टर लगा हुआ है और ये एक आदमी सामने के साइड से जा रहा है।

सामने एक छत है जो लगाई गई है भूरे रंग की एक सीडी दिया गया है जिससे मसाला लेकर आया जा रहा है और छत के ऊपर डाला जा रहा कुछ लोग मसाले को बराबर कर रहे कुछ लोग खड़े है।

ये लाइन वाला टी-शर्ट पहना हुआ आदमी एक कागज रखे हुए है। सामने के साइड पर देख रहा है अगल बगल इटे रखे गए हैं जो भूरे रंग की है सामने एक गाड़ी है दो जो हेलमेट लगा हुआ है।

सा ये लड़की ये लेडीज ने लाल रंग का साड़ी लड़के ने भटरंगी और सफ़ेद रंग का पैंट पहना हुआ है सा पीछे के साइड पे बड़ा सा गेट है जो भूरे रंग का दीवार का रंग पीला है।

दो ऑटो खड़ी हुई है जो लाल रंग की और पीले रंग की ऑटो छत भी लाल रंग की है बाल्कनी मे एक लेडीज खड़ी है और सफ़ेद रंग का बिल्डिंग है बगल मे एक गाय खड़ी है जो सफ़ेद रंग की है दो अशोक के पेड़ लगी हुई है गेट का रंग नीला है और हरे रंग का है।

इनमे एक बडा सा डैम्प है। जो तीन चार डैम्प खुले हुए है। दो ले एक लेडिज और एक आदमी खडा है। जो--

कुछ आदमी लोग अंदर के साइड पे जा रहे है एक आदमी बाहर साइड आ रहा है जो छोटी बच्ची को लिए है अगल बगल पोस्टर लगे है जो सफ़ेद रंग की है।

अंदर के साइड से कुछ आदमी बाहर आ रहे है और अंदर भी डेकोरेट किया गया फूलों के साइड फूलों से--

जो ये डाक घर है जो पीले रंग की और कत्थे रंग का--

और भूरे रंग की मिट्टी है फिसलन पट्टी भी दी गई है जो लाल रंग की--

एक छोटा सा बँक है जो बहुत सारे लोग खड़े है मास्क पहने हुए हैं लाइन बार से खड़े बगल में एक औरत बैठी है।

एक लड़का इस स्टेज के ऊपर बैठक दो लड़के खड़े है अगल-बगल पड़े लगाए गए है जो पीले रंग के पीछे साइड मे भटरंगी कलर के परदे लगे हुए है सामने दो चप्पल एक चप्पल उतारा गया है जो लाल रंग की है।